एक शिक्षक उनके बच बताते हुए प्रैक्टिकल करवा रहे हैं कैसे कार्य करना है।

हर टाइम हर घड़ी जिस टाइम जाओ उस टाइम में मिल जाएगी आपको--

यह एक फोर लाइन हाईवे है और पीछे टोल टैक्स है।

यह एक कार है और यह एक मैकेनिक है जो कि गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है और यह सुधारने का कार्य कर रहा है।

पचास से साठ किलोमीटर प्रति घंटे की स्प्लिट है और यह एक बार चार्जिंग होने पर पचास से साठ किलोमीटर तक चलती है।

शोरूम से नई बनके उतरी है जिसे ही इसको शो रूम पर इनवाइट दि दिया जाएगा--

वितरण किया जाता है जैसे मूल मूल्य रेटों के अनुसार जो कि सुबह शाम आते हैं और ले जाते हैं दूध अपने हिसाब से।

दोनों काम करती है बुवाई भी की जा सकती है इससे और जुताई भी--

इसपे निकलता हुआ पानी का बना हुआ है मस्त--

अपने घर बिजली आती है और ग्यारह सौ ग्यारह हजार वोल्ट --

आती है और इसमें कन्वर्ट हो के चार सौ चालीस वोल्ट अपने घर के अंदर बिजली देता सप्लाई देता है।